और कुछ-कुछ बैठे हुए है और अन्दर लाइट भी जल रहे है।

हम यहाँ देख पा रहे है की ये एक बड़ा जैसा डैम है जहाँ देखिए कुछ नाये बड़े नाये चल रही है और --

दिखने में बहुत ही सुन्दर और दूर में देखिए पहाड़ भी नज़र आ रहे है।